ग्राउंड है और सामने पार्क बना रखा है काली घास है नहीं है।

ये दुकान है जैसे अलैव्हिल टंगे हुए है टायर टंगे गए हुए हैं टूल्स रखे हुए एक घड़ी खोल रखी है।

ना डूबने वाले बुट पहन रखे हैं और आगे ब्लू कलर की बोट है उसमें एक दो लेडिज है बैठी हुईं है पानी के अंदर है ये लोगों और बाहर बड़े बड़े पेड़ हैं।

अलमेरिज बना रखी है ऊपर एक बोर्ड लगा रखा है उसके बगल में ऐ_सी है स्टेबलाइजर है।

पेपर्स रखे हुए हैं बैग रखा हुआ है यहां पे--

ये एक घर है व्हाइट कलर का साइड में मोटा पिलर दो पिलर बना रखे हैं अन्दर जाने का रास्ता है बिल्डिंग बना रखी है।

एक में कम पत्ते हैं और एक में भरे भर के पत्ते भरे हुए हैं।

हाथ आगे करके ओम नमः शिवाय करके बोल रहे हैं रखे हुए हैं वहां पे टेबल रखा हुआ है।

चेयर्स रखी हुई है काफी सारी बगल में जूते उतार रखे हैं एक रेड कलर का कारपेट रखा हुआ है बगल में ऊधर सोफे रखे हुए हैं सामने मंदिर है।

ये एक पार्क है पार्क के अंदर पाइप फैला हुआ है ये पीपल का पेड़ है हरीश--